इस फोटो पे मुझे एक लेबर दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे बड़े बड़े कार्टून के बॉक्स रखे हुए है।

तीन से चार कैमरे की लाइटें लगी हुई हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

कुछ लोग यहां पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े खंभे गड़े हैं।

चार लोग वो लोग खड़े हुए है।

इसमें बहोत सारा तेल लगाया गया है और यहां पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

साथ में यहां पास बहोत सारी डिब्बों में दवाइयां को भर के रखा गया है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं तीन से चार कैमरे लगे हैं।

चारों ओर लोग खड़े हुए हैं। यहां पर बहोत सारी मशीनों को रखा गया है। साथ में यहाँ कुछ बड़े बड़े--

इस फोटो पे मुझे एक ऑफिस रूम दिखाई दे रहा है। जहां पर बहोत सारे डॉक्टर --

इस फोटो पे मुझे एक बच्चा झूला झूलते हुए दिखाई दे रहा है साथ में यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं चारों ओर कैमरे लगाए--

पास एक झूले में एक बच्चा बैठा--

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है। साथ में यहां कुछ लोग खड़े--